सारी हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

इस दृश्य बोहोत सुंदर मनोरम दिख रहा है।

यहां बहुत सारे व्यक्ति एवं महिलाएं दिख रही है जो सामान की खरीदी कर रही है।

एक कार को सुधार रहे हैं जो विभिन्न प्रकार की कारें दिख रही हैं।

बहोत सारी लकड़ियां बांस की लगी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक पेंट की दुकान है जहां पर बहुत सारे पेंट धरे हुए है।

इसकी बाउंड्री वाल के बगल में बहोत सारी साइकिलें खड़ी हुई है।

यह टिन का बना हुआ एक पार्किंग शेड है।

इसका प्रयोग लोग वजन कम करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में भी करते हैं।

दीवाल पर गुलाबी रंग का कलर पोता हुआ है।

व्यक्ति के पीछे अ पेड़ दिखाई दे रहा है एवं विभिन्न प्रकार की झाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे गुलदस्ते धरे हैं ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सीढ़ियां बनी हुई है।

बीच में एक स्तंभ सा बना हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक व्यक्ति एंट्री मशीन के पास पास में एंट्री कराने के लिए खड़ा हुआ है।

कूलर फ्रिज टी_वी एवं अन्य आइटम एक मैट बिछी हुई दिखाई दे रही है।

एक महिला दिखाई दे रही है जो झाड़ियों को पानी दे रही है।

बहुत सारे लड़के सफेद कलर के कुर्ता पजामा पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

तीन स्टेच्यू दिख रहे हैं जिसको लोग बोहोत सारे बच्चे देख रहे हैं।

स्टैचू के पीछे बहोत सारे रेल जैसे वाहन में बैठे हुए है।

यह सुंदर बहुत आकर्षक और मनमोहक दृश्य लग रहा है।

ए एक जिम का चित्र इसमें एक व्यक्ति मोबाइल लेकर अपनी फोटो खींच रहा है।